यहाँ पे स्टाल भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारा --

ऊपर मे बहोत सारे बड़े-बड़े बलून लगाए हुए है रूम नीचे बलून बिखरा पड़ा है।

यहां एक बड़ासा सा टावर दिख रहा है जिसमें तीन टर्मिनल हैं नीचे तारे गयी हैं नीचे और भी टावर सी दिख रही हैं नीचे घांस--

यहाँ पे एक व्यक्ति का मूर्ति बना हुआ है ऊपर में लाइट लगा हुआ है यहाँ फूलों से सजाया गया है यहाँ बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

पीछे तरफ बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।